इसको बोहत झन खरीदने के लिए कोशिश किये हैं और इसको खरीद ही लेंगे तो या भी ऐसा ऐसा --

हम लोग अपना बाइक इठाते हुए लेके आये हैं पैदल तो पेट्रोल डलवा रहे हैं भगवती पेट्रोलियम नवाड़ी यही हैं।

और यहाँ सस्ता पेट्रोल मिलता हैं जैसे कि सौ रुपए लीटर और गिजल भी सौ हैं तो अच्छा हैं।

हेलो गाइस तो आप देख सकते है बलरामपुर हमलोग किले मे आये हैं और यहाँ पे सुन्दर दृश्य देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही और यहाँ --

हैलो भाई तो जैसे के देखिये यहाँ ये कुछ कार्यक्रम है और स्कूल की तरफ से कार्यक्रम किया करवाया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ है जोकि अपना--

कमाल दिखा रहे हैंऔर दर्शक के अम्म्म दर्शक बहोत भरे हुए हैं खचाखच और देख सकते है वहाँ स्कूल बस भी खड़ी हुई है।